यहां पे कुछ लोग चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक होटल का दृश्य दिखाई पड़ रहा है जहां पे बहुत सारे फूलों से सजाया गया है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसका नाम वीडियो मिक्सिंग लैब है।

एक दो व्यक्ति भी आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे कलर के फूल से रूम को सजाया गया है।

यहां स्टीकर पे एक ऑटो भी दिखा लगा हुआ दिखाया जा रहा है।

इस फोटो में पेंट पूजाड़ा का दुकान दिखाया जा रहा है जहां पे डिब्बे में अलग अलग पेंट रखे हुए है।

यहां पे बहोत सारे अ चीजे रखी हुई है।

यहां पे फल का भी दिखाई दे रहा है जिसमें केला और सेब दिखाई पड़ रहे हैं।

इस फोटो में इलेक्ट्रॉनिक दुकान का दृश्य दिखाया गया है जहां पे बहुत सारे टी_वी दिखाई जा रहे हैं।

यहां पे दो कुलर रखे लगाए गए--

यहां पे ये साइड में एक दुकान भी दिखाया जा रहा--

यह बिजली विभाग का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पे एक टेबल भी दिखाया गया है रूम के अंदर।

यहां पे नीचे कुछ गंदगी भी दिखाई दे रही है।

जहां पे बोर्ड पे दो नंबर भी लिखे हुए हैं।

यहां पे अलग अलग कलर के बैग दिखाई जा रहे हैं।

और इसके बगल में जो दीवार है वो अ अ ऑरेंज कलर का पेंट किया हुआ है उसके ऊपर वाइट दिखा व्हाइट कलर दिखाया जा रहा है।

इस फोटो में जंगल का दृश्य दिखाया गया है जहां पे नदी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मंडप का शाद दिखाया गया है जहां पे अलग अलग कलर के फूल से सजाया गया है।

पे छज्जा पे बहुत सारे कार्टून भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में एक जे_सी_बी जमीन खोदते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पे यह फूल गमले में लगा हुआ है।

इसके साइड में बहोत सारी घास भी दिखाई पड़ रही है और साइड में बहोत सारे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे बनाने का चीजें रखी हुई है।

पेट्रोल पंप के एक ऑफिस भी दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे व्यक्ति है।

यहां पर नीचे बहुत सारे अ सामान फैलाया गया है और यहां पर जमीन मिट्टी का दिखाया जा रहा है।